यहां एक ए_सी रूम की मशीन लगी हुई --

सभी खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं सभी के हाथों में प्लेट्स है।

इस पिक में एक हपस्ताल मतलब की हॉस्पिटल दिख रहा है हॉस्पिटल म--

यहां एक टेबल पे वाटर कूलर रखा हुआ दिख रहा है।

सर्टिफिकेट ओ सीनरी करवा के लगाए हुए हैं और एक रैक दिखाई दे रहा है और काउंटर पे एक--

जे_सी_बी रेता निकाल कर बजरा निकाल कर डेंपर को भर रही है।

कुछ धागे की तरफ बांधी हुई हैं कुछ मौली तरफ बांधी हुई हैं।

कुछ व्हाइट कलर का है कुछ ग्रीन कलर का है और कुछ पिंक कलर का है।

डी_जे साउंड वगैरा लगाए गए हैं और कुछ--

ये एक स्कूल का ऑफिस लग रहा है।

यहां बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

और पहाड़ भी दिख रहे हैं पहाड़ों पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं हरे भरे पहाड़ दिख रहे हैं।

और कुछ विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे--

और हॉल को बहोत अच्छे से डेकोरेट किया गया है और मिरर का डोर बने हुए है और गाड़ी के आगे मैट लगा हुआ --